यहाँ पर एक घर दिखाया जा रहा है घर के सामने एक मैदान है मैदान में छोटे हरे घास है और माटी बालू का मैदान है मैदान में बहोत सारे पेड़-पौधे भी लगे हुए मैदान के ऊपर से एक बिजली का तार भी गया --

पत्थरों का पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसमे बहोत सारे जंगल भी है यहां पे जंगल मे बहोत हरे-भरे पेड़ पौधे है।

बगल में नारियल की और खजूर के पेड़ भी लगे हुए हैं उनके पत्ते बड़े-बड़े ऐसे छोटा-सा रेलिंग भी बनाया गया जो लोहे का रेलिंग है जो छोटा एक सा बचा हुआ रेलिंग का है।

जो सीढ़ी ऊपर जा रही है इसके जो रास्ता ऊ पूरा कच्चा रास्ता है इसके साइड मे एक दीवाल लगा हुआ है जो दीवाल पे लाल कलर किया हुआ है दीवाल के उधर एक छोटा सा घर बना हुआ है जो सफेद रंग का घर है।

ये दो पहाड़ों के बीच से एक पतला रास्ता गया है पहाड़ के एक तरफ बहोत बड़ा एक पत्थर गी गिरा हुआ है जिस पत्थर का रंग एक साइड से पीला पत्थर है और --

इसे खाने के लिए छुरी और चम्मच का इस्तेमाल किया गया है इसको सजाने के लिए-- इसको ऊपर से सोया फिड्स दिया गया है।

भगवान का आश्रम है जहाँ पर लोग यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं इन्होंने केसरी कपड़े रंग के कपड़े पेहेने हुए हैं यहाँ पर एक बड़ा गाछ है।